नीचे कुछ जेंट्स खड़े हैं जेंट्स ने यहाँ ब्लू कलर का पैंट रेड कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है एक लड़का खड़ा है जिसने ब्लू कलर का पैंट ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और --